इस फोटो में मुझे अमूल की क्रीम का पोस्टर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक सिग्नल का टावर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक ट्रे दिखाई दे रहा है।